पीले रंग की मैगी के पाउच दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर आसमान का रंग नीला है।

और वहां पर बल्ब भी लाल पीले नीले सफेद दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड का रंग लाल है उस पर कुछ खाने की सामग्री के सीन भी बने हुए हैं।

विमल स्टोन मर्चेंट रेड कलर से लिखा गया है।

इसमे तीन खिड़कियां है। दो खिड़कियां चोड़ी और एक खिड़की छोटी है।

जिस पर एक किताब खुली एक कॉपी पर पेन रखा हुआ है।

यह एक जनरल स्टोर का सीन है।

और ब्लू कलर के बोर्ड पर जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

यह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है।

और एक हुक्का भी रखा हुआ है।

इसकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है। जिन में तीन खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

उसके बाहर बाइक्स खड़ी है। ये बर्ड रेड कलर के है।

इसमें कुछ लोगों ने बतख बच्चो ने बतख--

यह एक बच्चों का पार्क है जहां पर बच्चे आपस में खेल रहे हैं।